काफी मिट्टी और ये लकड़ी सी गिरी हुई है पेड़ के ऊपर एक सीढ़ी लगी हुई है।

एक पक्षी है जिसकी लाल कलर की चोंच है और ब्लैक ब्लैक कलर से पीछे हैं।

एग्जाम पे बच्चों को जिम की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे बॉडी हेल्थ अच्छी होती है जैसे कि आपको यह देख पा रहे हैं एक--

वे फूलों से बहुत ही अच्छा लग रहा है पीछे एक सोफा लगा हुआ है पर्पल कलर का और दूल्हे ने शेरवानी पहनी है और दुल्हन ने लहंगा चुन--

बहुत ही ज्यादा साफ सफाई है क्लिनिक है बिल्कुल बहुत सारे आदमी है जो--

या ट्रेनिंग दे रहा है। सब अपने योगा में व्यस्त है। नीचे मेंट बिछी हुई है।

इसमें फसल उगाई जाती हैं जिसकी अच्छे तरीके से देख रेख की जाती है और--

कुर्सियां मेज रखे हुए हैं जिनपे वाइट कलर और रेड कलर के कवर डाल--

बीए बुक वगैरह भी रखी है और एक ए_सी लगा हुआ है बहुत ही ज्यादा साफ सु--

है और इसके साइड में आप देख पा रहे हैं एक घर है इसके ऊपर बहोत सारे कपड़े सुखाए हुए है।